यहाँ पर कंप्यूटर की दुकान हैं।

यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े झाड़ हैं और यहाँ पर नीचे हरे-हरे घास हैं।

दुल्हे के गले में हार लगा हुआ हैं।

अम्मे की ओर में बहुत सारा घास उग गयी--

और यहाँ पर ऊपर और रंग हैं शाही नीला रंग--

यहाँ पर बहुत सारे साइकिल हैं छोटी बड़ी और यहाँ पर चार लोग हैं।

भगवानों की फोटो रखी हुई हैं।

यहाँ पे फीचे झाड़ उगे हुए हैं।

यहाँ पे बहुत बड़ा महल हैं और इसको फूलों से सजाया हुआ हैं।

और यहाँ पर चारों ओर टेबल लगी हुई हैं को--

पीछे दो कुर्सी लगा हुआ हैं ।

यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन हैं और यहाँ पे चारों ओर--

यहाँ पे रूम में दो बेड रखे हुए --

यहाँ पे बहुत बड़ा समारोह चल रहा--

कुछ खूबसूरत फूलें लगाए हुए हैं।

यहाँ पे छोटा सा बहुत खूबसूरत सा चर्च हैं यहाँ फत्तरो के ऊपर--